इस पिक्चर में एक जनरल स्टोर दिख रहा है टाफी बिस्कुट का डिब्बा--

एक ये शॉप दिखाई दे रहा है।

एक आदमी लैपटॉप के सामने बैठा है कंप्यूटर के उसके बगल कंप्यूटर रखा है एक लैपटॉप रखा है।